इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यह प्लेट ग्लास और अन्य फाइबर की चीजों की दुकान है।

में रेलवे रोड शामली से संपर्क लिखा हुआ है इसमें लाइट अंदर जल रही है।

एक शटर के माध्यम से इसे बंद किया जाता है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक पंखा भी लगा हुआ है।

पिक्चर्स में दिखाया गया है कि दो व्यक्ति हैं।

इसमें हरे भरे पेड़ पौधे हैं हरा भरा ग्राउंड है और एक बड़ा सा नारियल का पेड़ दिख रहा है।

और कमरे दिख रहे हैं।

बहुत सारे पेज भी रखे हुए हैं।

दिखाई दे रहा है कि यह एक झरना है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पानी बहता हुआ नीचे की ओर जा रहा है।

रखने के लिए टेबल रखी हुई है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री सी दिख रही है।

चारों तरफ बाउंड्री की गई--

एक में यह दिखाया गया है कि यह एक बड़ा सा घर है।

इसमें ऊपर और उसके पोस्टर भी लगे हुए हैं सिलाई मशीन की के डिब्बा है जिसमें सिलाई मशीन का पैक करके रख --

इस तस्वीर में देख रहे है कि यह एक रेस्टोरेंट है।

बाहर एक व्यक्ति है कई सारी कार दिख रही है।

बड़े बड़े लंबे लंबे खंबे सफेद कलर के लगे हुए--

पेड़ पौधे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

और एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा--

इसके पंख भी फैले हुए हैं यह जमीन के नीचे बैठा हुआ--

और वो आदमी कुछ बोल रहा है सारे लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं।

एक दो तीन चेयर भी रखी हुई--

कई बाइक खड़ी हुई है और बहुत सारी लाइट भी जल रही है।